यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें डॉक्टर अमित आनंद जो एम_बी_बी_एस बी_एम_सी_एच पटना से किए हुए हैं और नीचे डॉक्टर रसिन कुमारी का भी बोर्ड लगा हुआ है।

यह कोई कारखाना है । यहाँ बहुत सारी सामान बनाई जाते हैं । कुछ सामान रखी हुई हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ।